में एक वाहन भी दिखाई दे रहा है।

साइड में एक फील्ड भी दिखाई दे रहा है।

हॉल में बहुत सारा आदमी दिखाई दे रहा है।

फिर एक गरी भी दिखाई दे रहा है।

ये तस्वीर में बहोत सारा लोहा दिखाई दे रहा है।

जो बहोत सारा खिड़की भी दिखाई दे रहा है।

पीछे में बहोत सारा जंगल भी दिखाई दे रहा है।

फिर दो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैनर दिखाई दे रहा है।

एक चेयर भी दिखाई दे रहा है।

रस्ता में एक लड़का भी दिखाई दे रहा है।

बहोत सारा फ्लावर भी दिखाई दे रहा है।

चर्च का अंदर में बहुत सारा आदमी दिखाई दे रहा है।

साइड में दो स्पीकर भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर में बहोत सारा बैनर भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक बड़ा सा प्लेट दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा सर्टिफिकेट भी दिखाई दे रहा है।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

दो टेबल भी दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में बहोत सारा चेयर दिखाई दे रहा है।

फिर आगे में एक व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है।

आगे में एक बेलकनी भी दिखाई दे रहा है।

पीछे में बहोत सारा बेंच भी दिखाई दे रहा है।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

दुकान में बहोत सारा बिस्किट दिखाई दे रहा है।

एक लाइट बल्ब भी टंगा के दिखाई दे रहा हैं।

यहां पे एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के ऊपर में बहुत सारा लाइट भी दिखाई दे रहा है।

टेबल के साइड में दो चेयर दिखाई दे रहा है।

कार का पीछे में बहुत सारा बाइक भी दिखाई दे रहा है।